हरिन जाल में फसा हुआ है बहुत सारे हरीन है जंगल में है झाल में फसा हुआ है। पेड़ है ---

हरिन जो है ना बहुत सारे हैबहुत अच्छा-अच्छा हरिन है।